यहाँ एस_बी_आई स्टेट बैंक सी ए_टी_एम है।

घर भी दिख रहे हैं और पेड़ बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे--